यह चित्र एक दुकान का है जिसका शटर बंद है।

और एक आदमी ने जैकेट भी पहनी हुई है।

और छोटे-छोटे लकड़ी के कैबिन भी बने हुए हैं।

सफेद टॉप और काली पेंट भी पहन रखी है।

यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और बहुत ज्यादा लाइटिंग की गई है।

टी-शर्ट पहनी हुई है और जींस पहनी हुई है।

और दीवार पर ए_सी लगा हुआ है।

उसका इंजन लाल है पीछे कई डिब्बे हैं।

और एक छोटी सी पटरी भी है जिस पर ट्रेन --

में एक बड़ी सी शोरूम दिखाई गई है।

और उसके बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कोई शादी का समारोह चल रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है बेकरी वाला द केक शॉप उसके ऊपर एक कमरा है।

यहां पर कुछ लोग प्रार्थना मुद्रा में खड़े हैं।

सामने सब्जी की दुकान है। एक आदमी सब्जी खरीद रहा है।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

उसके बराबर में काउंटर है उस पर एक आदमी --